नदी पे ब्रिज बना हुआ है ये बहुत बड़ा है।

हम शाम के वक्त जब हमें हल्का भूख लगता है तो हम स्नैक्स खाते है ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होते है।

बैठके योगा कर रहे हैं यहाँ और योग गुरी गुरु योगा सीखा रही हैं और यहाँ सभी लोग योगा कर रहे हैं। योगा हमारे सेहत के लिया बहोत अच्छा होता है।

ये सभी बहुत ध्यान से योगा कर रहें हैं। योगा हमारे लिए बहुत जरुरी है।

और यहाँ पर मुर्गा ब यहाँ पर तीन बड़े-बड़े मुर्गे हैं। इनके पूछ बहुत लम्बे हैं।

ये लकड़ी का है और ये बहुत ही सूंदर है। इसे पेंट भी किया गया है।

सभी उस किस्म के कलर के पक्षी हैं।